इस पिक्चर में मुझे एक दुकान दिख रहे हैं।

पीछे में फेंसिंग लगे हुए है।

इस पिक्चर में मुझे एक वाइट कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक मार्केट एरिया दिखाई दे रहा है।

और बाहर में जो है रेड कलर का कार है।

बहुत सारा चेयर और टेबल लुक है।

और सामने में एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है।

और एक राइट साइड में भी एक वाइट कलर का बिल्डिंग है।

और बहोत सारे बाइक स्कूटी ऑटो पार्किंग करके हैं।

इस पिक्चर में मुझे कुछ महिला दिखाई दे रहे हैं जमे हैं जमा होके और पीछे में एक दीवार दिखाई दे रहा है।